लाइट ये यहां पे दिख रहे हैं।

और यहां पे ये आदमी देख सकते हो।

ये यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे आदमी--

ये यहां पे देख सकते हो यहां पे--

यहां पे देख सकते हो यहां पे ये आदमी भी--